इस दृश्य में एक माल नजर आ रहा है जिसका नाम गैलेक्सीया माल है।

एक स्कॉर्पियो भी खड़ा है जिसका कलर व्हाइट है।

ये दृश्य में एक स्टडी रूम नजर आ रहा हैं जिनके दीवारों के कलर पिला है।

की दीवारों के कलर व्हाइट और रेड है।

इस दृश्य में एक ऑफिस नजर आ रहा है इसके दीवारों के कलर व्हाइट है।

टेबल और चेयर भी लगे हुए हैं जिस पे कुछ लोग बैठकर लिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक मस्जिद नजर आ रहा है जिसके बोर्ड पर मदीना मस्जिद लिखा हुआ है।

दृश्य में एक मोर का चित्र नजर आ रहा है इसका कलर ब्राउन और ब्लू और वाइट है।

आसमान भी नजर आ रहा है और एक बाउंड्री भी नजर आ रहा है इसका कलर व्हाइट है।

इसमें एक इंडस लैन बैंक भी है और सी_एन टावर कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग दुकान भी है।

मे बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।

मे बहुत सारे अलग अलग परकार के कपड़े दिख रहे हैं।

इस दृश्य मेंबहुत सारे घर दिखाई दे रहा है इसके जो की अलग अलग कलर के हैं।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा साइकिल का दुकान नजर आ रहा है जिसमें कुछ छोटा साइकिल और बहुत बड़े साइकिल और अलग अलग प्रकार की साइकिल नजर आ रहे हैं।